यह एक स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ टिपिन टाइम है जिसमे बहुत सारे बच्चे टिपिन खा रहे हैं और एक वार्डन है जिसे वो देख रेख कर रही है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाइन से बेठे हुए हैं।

यह एक गुफ़ा है और इसे काट के बनाया गया है बहुत अच्छी डिज़ाइन ही दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति घूमने आते हैं ये पर्यटन स्थल है और इसे देखने में काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इसलिये दूरों दूरों से लोग देखने के लिए आते हैं और यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे लड़की हैं।

यह एक खेत है और खेत के बीचों बीच एक ट्रक डाला है जो रख दिया है और उसके पीछे में बिल्डिंग है और इधर बिजली के खम्बे गुजरे हुए हैं इधर से और खेत बहुत ही हरा भरा दिख रहा है ।.